आसपास बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं और साइड बाउंड्री में एक येलो कलर की दीवार दिख रही है।

सामने में कुछ सरसों के तेल की बोतल टूथब्रश चौकस और भी डिब्बे वाले रसगुल्ले और गुलाब जामुन के डब्बे दिख रहे हैं और भी कुछ भी राशन के सामान भी दिखाई दे रहे हैं।

बीच में पानी के बीच में कुछ जमीन भी दिखाई दे रही है ऐसे मतलब पानी के बीच बीच में हर जगह काफी सारी जमीन भी दिखाई दे रही है।

और ये अंडर कंस्ट्रक्शन का कुछ दिखाया गया है उधर कुछ ईटें गिरी हुई है जो कि शायद कंस्ट्रक्शन के काम आने के लिए है।

यह फोटो किसी बिल्डिंग के कार पार्किंग की लग रही है इसमें एक काले कलर की कार खड़ी है और फिर पीछे में एक बड़ा सा जनरेटर ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है और कुछ तख्ते भी दिखाई दे रहे हैं।

पीछे में कुछ खिड़कियां और दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं जिन पे नेट अ खिड़कियों पर नेट लगा हुआ है।

इस फोटो में सुबह का दृश्य दिखाई दे रहा है कुछ आस पास बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है कुछ घर दिख रहें --

बीच मे एक रास्ता जाता हुआ दिख रहा है एक एंट्रेंस गेट है जो की स्काई ब्लू कलर का है।

हरे भरे जमीन पे दो जानवर बैठा हुआ है।

आस पास बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं और पीछे कुछ पहाड़ दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इसमें धान बोया गया है इस खेत में।

पीछे में बहोत सारा शीशा और वर्कआउट्स के मशीन है।

इस फोटो में किसी ऑफिस के बाहर का सीन दिखाया गया है संभवतः यह किसी बैंक का है।